इस इमेज मे एक रोड दिखाई दे रहा है और इस इमेज मे एक न्यायालय का गेट दिखाई दे रहा है और इस इमेज मे कुछ ठेले दिख रहे है इस इमेज मे कुछ बाइक्स दिखाई दे रहा है। और --

कुछ दीवार खम्बे दिखाई दे रहे हैं। इस इमेज में कुछ मिरर दिखाई दे रही हैं। इस इमेज में खिड़किया दिखाई दे रही हैं। इस इमेज में कुछ लाइटस दिखाई दे रहे हैं। इस इमेज में कुछ बिजली के बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज एक इ स्टेडियम दिखाई दे रहा हैं जहा इस इमेज में एक बड़ा सा मैदान बना हुआ हैं इस इमेज में काफी सारे बैठने की जगह दी गयी हैं।

इस इमेज में कुछ अ मूर्ति अ रखी गयी दिखाई दे रही हैं इस इमेज में कुछ बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं इस इमेज में कुछ--

यह इमेज किसी जिम का हैं जहाँ इस इमेज में काफी सारे एक्सरसाइज वाले मशीन्स रखे हुए हैं और इस इमेज में एक हनुमानजी--

और इस इमेज काफी सारे दुकान मकान भी दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज में एक रोड भी दिखाई दे रहा है इस इमेज में स्कूटी गाड़ी भी दिखाई दे रहा है इस इमेज में एक कार भी दिखाई दे रहा है इस इमेज में बड़ेबड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और इस इमेज में कुछ खंबे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और इस इमेज में कुछ खिड़किया भी दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक मैदान दिखाई दे रहा हैं और इस इमेज में काफी सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और इस इमेज में काफी कुछ--

इस इमेज में एक रास्ता दिखाई दे रहा है इस इमेज में काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इस इमेज में गार्डनिंग भी दिखाई दे रहा हैं इस इमेज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे है और इस इमेज में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।